गाँव कुंवार लिखा हुआ है एक जैकेट पेहन कर भाई साब सूटकेस लेकर ऑटो वाले की तरफ देख रहे है एक ऑटो है वहाँ पे और एक फ़ोन से लग हुए है भाई साब बैग टांग कर।